टोपी लगाए हुए है यहां पर पीछे इसके कांच दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारी बाइक और उम्म साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं सामने एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारी दुकानें लगी है दुकानें कोई भी बंद नही दिखाई दे रही है।

यहां पर सेब और कलीरे रखी हुई है।

कुछ लड़के भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक दुकान लगी हुई है जिसमें बहुत सारे रही है नीचे टाइल्स लगी हुई है।

बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

यह सामने एक बुद्ध भगवान के बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है ।

यहां पर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई है यह सॉकेज है जिसमें कांच का शोकेस है इसमें बहुत सारी मिठाईयां दिखाई दे रही है।

सफेद कलर का पोता हुआ है।

जो ब्लैक कलर का है यहां पर तार दिखाई दे रही है जो बिजली के हैं।

जो नीले और सफेद कलर का है।

वहां पर बस दिखाई दे रही है जो खड़ी हुई है पीले कलर की बस है सामने --

यहाँ सामने कांच की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह सामने बहुत सारा पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह सामने एक पंचिंग बैग दिखाई दे रहा है।

ये सामने एक रोड दिखाई दे रहा है।

सामने एक टेबल रखी हुई है जो लकड़ी की बनी हुई है।

यह देखने में दिलकश ही लग रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

जो ब्लैक कलर की है।

जो ग्रीन कलर का है इसमें सफ़ेद कलर का थोड़ा थोड़ा बीच बंटा हुआ है।

यहां पर पर्दा एगो पर्दा दिखाई दे रहा है सामने एक कांच लगा हुआ है।

यहाँ नीचे चटाई बची हुई है जो रेड कलर की है यह देखने में रात का सीन लग रहा है।

जो सामने एक सीन दिखाई दे रहा है।